बड़ा सा लकड़ी का सोफा हैं इसमें बहोत सारे चित्र बने हुवे हैं गोल्डन कलर से पेंट किया गया हैं और एक सोफा दिखाई दे रहा हैं।

और करकट वाला सीन दिखा रहा है और स्टेट बैंक लिखा हुआ इंग्लिश मे हरिहर लिखा हुआ है पोस्ट --

और गिटार भी रखे हुए हैं और भी बहोत सारी चीजे रखी हुई एक आदमी खड़ा है कुछ लेकर और बजा रहा है।

और सामने में बड़ा बड़ा हरा भरा पेड़ है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली--